यहाँ एक हॉल है हॉल के अंदर एक दुकान है तीन लोग खड़े हुए है वाइट कलर में पहने हैं कत्थई रंग का हुआ है बल्ब जल रहे है।

यहाँ बाजार है बाजार में सब्जियाँ बिक रही है बहुत से लोग खरीद रहे हैं।

और सब रखी हुई हरी सब्जी रखी हुई है और धूप निकली हुई है ये और तसला रखा हुआ है।

कुछ यहाँ पे बहुत खड़े हुए हेंगे बहुत से लोग हरा रंग के कपड़ा पहने है पेड़ लगा है हरे रंग के पत्ते हैं नीचे काले रंग की जमीन है।